एक बड़ी सी मस्जिद दिख रही है जहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है बड़ी-बड़ी लाइटें लगी हुई हैं खिड़की दिख --

हमे एक बगीचा दिखाई दे रहा है जो की बहुत सुन्दर दिख रहा है वहां एक शेड डला हुआ है।

एक शेड डाला हुआ है जहाँ पर छत डली हुई है आस-पास रखी है आसमान दिख रहा है बादल दिख रहे हैं दूर घर दिख रहे है।

आसमान दिख रहा है उसमें घास दिख रही है।

एक मैदान दिख रहा है जहाँ पर औरते बैठी हुई हैं।

एक शेड डला हुआ है बगीचे में कुर्सियाँ लगी हुई हैं पत्थर की।

के बाहर एक बड़ी सी घंटी टंगी हुई है मूर्ति पर माला टंगी हुई है उसमें बहोत मुंडिया बनी है।

इस चित्र में एक बड़ी दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पर जीन्स रखे हुए हैं टी-शर्ट दिख रहीं हैं एक दुकान पर लाइटे लगी हुई हैं।